यह एक अस्पताल का दृश्य है जिसमें लेटे हुए व्यक्ति मरीज है।

साथी अगल-बगल में बहोत सारे वृक्ष --

बिल्डिंग बहुत ही भव्य और लुभावनेदार लग रहें हैं।

जहां पर मछली विक्रता बैठ करके मछली काट रहाी है।

तो काफी ही भव्य और मनोरम लग रहा है।

विद्यालय नजर आ रहा है जो रेजिडेंशियल भी है जिसका पट --

ढंग से सजा हुआ है।

नजर आ रहा है लड़का अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर किसी बिल्डिंग का निर्माण की कार्य चल रही है ।